शॉप में काफी सारा सामान रखा गया है जिस --

उनके पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ है जो की ग्रीन कलर का है।

सामने घर में जो बैनर लगाया गया है उस --

उधर की साइड में जो वाॅल रखी गई हैं जिस --

ब्राउन कलर किया गया है ऊपर की साइड पे जो लाइट लगी गई है जो वॉल है उस --

ऊपर की साइड में इसमें पंखा लगाया गया है जो --

इसमें लाइट कलर की है गाइस इसमें मोटे-मोटे पाइप भी लगाए गए हैं।

और आस-पास में कुछ बिल्डिंग्स भी बनाए गए हैं उनमें भी खंभे बनाए गए हैं।

नीचे की ओर में एक मशीन रखे गए है जो की कूलर है।

यहाँ पे एक बहुत बड़े डेस्क डले हुए है।

और ये पॉलिथीन में अच्छी तरीके से पैक की गई है।

सामने की ओर में एक काँच का गेट लगाया गया है जो की इसमें कुछ लिखा गया।

नेक काले कलर का चश्मा भी लगाया गया है।

इसमें दो लड़के दिखाई दे रहे हैं जो की नहा रहे हैं।

दो लड़कियां है जो छोटी-छोटी बच्चियां है जिन्होंने मोमबतियां पकड़े हुए है।

नीचे के साइड में टालस लगा हुआ है जिसमे ब्लैक कलर वाइट कलर किया गया है।

यहां पे बहुत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है।

खम्बा भी दिखाई दे रहा है खम्बा काफी मोटा और बड़ा हुआ है यहाँ पे रेलिंग लगाई गई है।

यहाँ पे एक स्टील का स्टूल रखा गया --

उन्होंने कत्थक प्रकार की ड्रेस पेहनी हुई है जो की ऑरेंज कलर की है।

सामने की ओर में एक सूपा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर सामान रखा गया है।

मे काफी बेकार के सामान रखे गए है जिसमे जूते है चप्पल है।

और यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

सामने घर में बहुत सारी बाइक्स खड़ी है वो जो स्कूटी भी है।

पेट्रोल पंप काफी बड़ा --

यहां पे एक बोहत बड़ा खेत दिखाई दे रहा है जिसपे खेती की गई है फ्लावर्स की।

सामने की ओर में एक शोकेस बनाया गया और उसके ऊपर बुक्स रखी गई हैं जिसपे वाइट कलर ब्लैक कलर है।

सामने की और में बहुत सारे बैग्स दिखाई दे रहें हैं।